बहुत सारे वेंटीलेटर हमें दिखाई दे रही है।

इस पर है हस्त सिल्क पर्दासिनी अवांग मेला लिखा हुआ है।

रखी हुई है गेहू जिसे निकले जाते है।